लड़कियां है बहुत सारी लड़कियां नाच रही है और उसके ऊपर एक पंखा है।

एक माल है माल के पास सिटी मॉल --

मेरे सामने तीन कुर्सी है कुर्सी के सामने टेबल है।

कैफे है कैफे में बहुत सारी कुर्सी हैं उसके सामने चेयर है।